जो दुकान हम देख रहे हैं उसका शटर लाल रंग का है और काफी चौड़ी दुकान हैं।

भारी मशीनें हमको दिखाई दे रही हैं ये भारी मशीनें किसी ने किसी उत्पाद को बनाने के लिए--

जो आपको हर कलर में मिल जाएंगी इसको बहोत हाई फाई गाड़ी माना जाता है क्योंकि इस--

यहां लगभग सब कलर सब हर कलर की वैरायटी सामान की मिल जाएगी आपको हर बॉक्स में हर उस कुछ ना कुछ रखा हुआ है हर प्रोडक्ट रखा हुआ है।

ये दुकान कपड़ों से ठसाठस भरी हुई है ऊपर नीचे सब जगह कपड़े ही कपड़े और उनके डब्बे नजर आ रहे हैं दुकान में आपको हर तरह के कपड़े नजर आ रहे हैं रंगबिरंग--

और नेवी ब्लू का क कांबिनेशन है और उसके पीछे जो शेरवानी है वह गाजरी कलर से इसमें कढ़ाई की गई है बहुत अच्छी लग रही है देखने में।

हमारे दृश्य के सामने हमारी आंखों के सामने जो दृश्य है वो एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का है जो बहुत ही विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है बहुत ही ऊंची--

और इस अ गा आज कल की कुछ गाड़ियां है जो बैटरी से भी चलती है पर--

और उसके आप थोड़ी दूर पे हम देख रहे हैं लाल कलर की नई इमारत नजर आ रही है और उसी के पीसाध में पेड़ पौधे भी हैं।